नीले रंग का बड़ा सा बोर्ड बना है नीचे सामने दुकान के कुछ लोग खड़े हैं कुछ महिलाएं हैं।

पीछे की दीवार हरे रंग की दिख रही है नीचे का फर्स पीले रंग का दिख --

यहाँ पर देवी जी की तीन मूर्तियाँ हैं बगल में एक गणेश जी की मु --

वेल्कम शताक्षी लिखा हुआ है।

दीवार गुलाबी रंग की है मशीन काले रंग की है इसके दोनों तरफ सफेद रंग के चार-चार बटन लगे हैं नीचे कुछ पट्टी पे सफेद रंग --

जिसमें एक मंदिर जैसी आकृति बनी है जिसमें भगवान बुद्ध की बैठी हुई मू --

ऊपर बड़ी बड़ी रोशनियों के लिए बल्ब लगे हुए हैं।

यहां पर सफेद रंग की तीन मंजिला इमारत --

हमें एक मंदिर के सामने में एक लड़का एक लड़की और एक महिला खड़ी दिख रही।

टोटल चार पिल्लर दिख रहे है।

मकान के ऊपर नीले रंग के बीच में पट्टे भी बने हैं।

बगल में भी दो दरवाजे है।

इसमें पलंग पर एक आदमी के दो पैर दिख रहे हैं।

दोनों पैरों में इन्होने मोज़े पेहेन रखे हैं।

काले रंग की एक लंबी सी बस देख सकते है।

बस के अंदर कुछ लोग दिख रहें हैं।

हाफ पेंट नीले रंग का पहने खड़ा है।

कुछ अंग्रेजी मे डिजाइन के साथ में लिखा भी है।

बगल मे एक वेंटिलेटर बंद दिख रहा है।

कुछ छोटे पेड़ भी लगे हैं।

स्टैंड के ऊपर कैमरा लागाकर कुछ सामने की ओर देख रहा है।

पीछे एक मकान के पास सफेद रंग की स्कूटी खड़ी है।

बगल में एक मकान पीले रंग का है और उसके ऊपर भी एक सफ़द गुंम्बद बना है।

यहां पर जिम के अंदर एक आदमी मशीन पर लेटा है।

जबकि पीछे के तरफ बड़ी-बड़ी घास दिख रही है।

उसके पीछे में सफ़ेद रंग कि दो मंजिला बिल्डिंग दिख रही है।

सामने के तरफ सफ़ेद रंग के सीमेंट की दिवाल पर हरे रंग कि घास लगी है।

पिछे हरे रंग का बड़ा खेत दिख रहा है।

नीचे स्टैंड लाल रंग का है जिसपे कुछ सामान रखा है।

दीवाल पर कुछ कांच और रैक के अंदर कुछ सामान भी रखा है।

यहां पर हल्के लाल रंग और पीले रंग से सजी सीढ़ियां ऊपर की ओर जाते दिख रही है।

लंबे-लंबे तार दिख रहे है।

पीछे की तरफ सफ़ेद रंग की दो पुराने मकान दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक बडा सा हॉल है।

बीच मे स्टील की फाउंडेशन जैसा बना है।

ऊपर काले रंग के बोर्ड पर कुछ एरो और अंग्रेजी में लिखा हुआ है।

पीचे बिल्डिंग में बहोत सारे बडे-बडे बोर्ड लगे हुए हैं।

पीछे किनार पर कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े होकर बात कर रहे हैं।